हमे यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी गेट दिखाई दे रही है जो कि बहुत अच्छी है जोकि लोहे की बनी हुई है एक बिल्डिंगे बनी दिखाई दे रही है जोकि सफेद कलर का पेंट हुआ है और बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

हमे यहाँ पर बहुत ही बड़ा द्वार दिखाई दे रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है इस पर लाल कलर के पेंट भी हुआ है और नीले कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है इसपे सफेद सफेद कलर से कुछ लिखा हुआ है।